यह एक इंजीनियर मीटिंग का चित्र है जहां पर बहोत सारे बड़े बड़े--

यह एक कपड़ों की दुकान का चित्र है जहां पर हमें बहोत सारे पुतले दिखाई दे रहे हैं।

मेज और कुर्सियों का रंग भुरा है।

होटल के सामने की पार्किंग का चित्र--

यह एक का ऑफिस का चित्र लग रहा है।

जैसे रेस्टोरेंट मिठाई की दुकान हार्डवेयर की दुकान आदि।

बिल्डिंग में कपड़े सुख रहे हैं।

और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और बाईकें भी खड़ी की गई हैं।

यहां पर बहोत सारी बेकरी है और ये ऐसा लग रहा है जैसे बेकरी का भंडार हो।

नी यानी डमी रखे गए हैं जिन पर कपड़े पहेनाए गए हैं।

होटल की एंट्री है जिसका नाम है सुखदेव पैलेस ।

कुछ बच्चे झूलों पर बैठे हुए हैं और--

झूल रहे हैं झूलो का रंग अलग अलग है जैसे पीला हरा लाल नीला आदि।

जिसमें से कुछ बस पीली कुछ बस सफेद हैं।